जिसके बाहर लिखा फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ है अंदर एक बेड पड़ा हुआ है।

लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है दो खिड़कियां लगी हुई हैं।

यह किसी नृत्य कार का चित्र है।

पीछे पूरे दीवाल पर काला रंग होआ हुआ है।

और प्याज के बहुत सारे गट्टे रखे हुए हैं। आलू के गट्टे रखे हुए हैं।

पीछे कोई हॉस्पिटल या अस्कुल बना हुआ है।

पेड़ का रंग भूरा है पीछे बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है।

पीछे तीन लाइटे लगी हुई है और एक कैमरा लगा हुआ--

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हुए है।

यह किसी सड़क का चित्र जिसके पास एक कार भी खड़ी हुई और--

नीचे एल_सी_डी भी रखी हुई है छत का रंग सफेद है।

दिवाल पर एक दौड़ते हुए घोड़े का चित्र बना हुआ है।

इन्होंने कुछ कागज से लैंप बना रखे हैं और कुछ मेजे भी रखी हुई हैं।

और यहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हुए है।

यह किसी सोफे की दुकान का चित्र है।

यहां पे चार सोफे रखे हुए हैं पीछे गुलाबी रंग का पर्दा लगा हुआ है।

यह किसी जिम का फोटो है जिसमें ट्रेडमिल लगे हुए हैं तो दो साइकिलिंग लगी हुई है।

यह एक स्विमिंग पूल का चित्र है।

एक हाथ है जिसके हाथ में अमरूद का --

यहां पर एक आदमी फोन लेकर आगे चल रहा हैं।

पीछे एक दवाल है जिस पर संतरी रंग हुआ हुआ है।

जहां पर बहुत सारी टॉयलेट सीट रखी हुई है।

पीछे द्वाल पर काला रंग हुआ हुआ है।

और एक दरवाजा लगा हुआ है। एक खिड़की लगी हुई है। एक बोर्ड लगा हुआ --

कागज से कुछ ट्रायंगल और ट्यूब जैसे आकृति बनी हुई है।

उसके दो कान हैं और दो आंखें हैं उस वो ऊपर की तरफ देख रही है।

जिसका नाम फैजल कंप्यूटर्स है।

गॉर्डन भी बना हुआ है जिस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

एक आदमी माइक के सामने खड़ा हुआ है जो भाषण दे रहा है।

पीछे पहाड़ है आसमान का रंग नीला है।